खीसा होता है और नाई के कुछ सामान होते हैं जिनसे वो बाल काटता है और उनके आगे टेबल होता है और उसमें की सीसा लगा होता है।

मंदिर गांव की भी होती है। मंदिर शहर की बड़ी होती है और मंदिर छोटी प्रकार की होती है। छोटी मंदिर अलग होती है। अलग-अलग देवी देवता के अलग-अलग मंदिर होते हैं।

नदी पहाड़ों से निकल कर के जाती है और समुंद्र में जाकर मिल जाती है भारत में अनेक प्रकार की नदियां हैं भारत की नदियों के नाम गंगा सरस्वती जमुना गंगोत्री गंगोत्री --

स्कूल में बच्चे पढने के लिए जाते हैं। स्कूल में काफी होती हैं।

रोड शहर को अनेक राज्यों से जोड़ता है हमारे देश में बहुत लंबी-लंबी सड़कें हैं हमारे देश में बहुत से नेशनल हाईवे है बहुत से स्टेट हाईवे हैं और ग्रामीण --

सिनेमा थिएटर भी है और जिसमें बहुत मूवी लगती है लोग मूवी देखने के लिए सिनेमा हाल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा आनंदित होते हैं।

गांधी मूर्ति के पास ये गेट बहुत ही ज्यादा --

कछुए के ऊपर का कवच बहुत कठोर होता है जिससे कछुआ अपने आप को बचाने में --

मरीजों को सुक्त किया जाता है जनरल वार्ड में नॉर्मल --

सन होता है इस जगह को कहते हैं। जहाँ मेट्रो आकर रूकती है और मेट्रो में यात्री बैठते हैं। मेट्रो --

जिससे कि लोगों को घूमने में आनंद आता है और --

काफी अच्छा अहम् भूमिका है। रेलवे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जोकि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक रेल यात्रियों को --

उनको ज्ञान दिया जाता है कॉलेज में काफी छात्र छात्रा आते हैं जिनको पढ़ाने के लिए काफी अध्यापक होते हैं कॉलेज की बिल्डिंग काफी बड़ी होती है जिसमें बोहोत सारे कमरे होते हैं और बोहोत बड़ा मैदान होता है जिसमें छात्र और छात्रा --